यहाँ तो ऊपर आसमानी कलर की पुताई की गयी है और नीचे पिंक कलर का दिख रहा है यहाँ पे एक आलमारी दिख रही है।

एक सामने स्कूल की बिल्डिंग दिख रही है जो कि वाइट कलर की है इसके स्कूल के सामने छीन के पेड़ लगाए गए है अंदर गेट दिख रहा है गेट खुला है।

यहां पे बीच में डिवाइडर में भी पेड़ लगाए गए हैं।

यहाँ पे बहुत सारी वाइट कलर की सीढ़ियां बनी हुई है जो कि ऊपर जा रही है ऊपर एक झोपड़ी दिख रही है।

यहां भी बहुत सारे साइड में पेड़ दिख रहे हैं यहां से एक लंबा वायर गया हुआ है ऊपर बादल आसमानी कलर के हैं।

यहाँ एक मल्टी बिल्डिंग का काम चल रहा है यहाँ बहुत सारे रोडे बिछी हुई दिख रही है दो लड़के लोग खड़े है एक लड़के के हाँथ में एक कॉपी दिख रही है।

रेतगिट्टी पड़ी हुई है बारिश का समय दिख रहा है यहाँ अल मल्टी तीन फ्लोवर की दिख रही है।

उसके पीछे में स्टार के साइड में दो कुंडियां रखी है उसमें छोटी हरी-हरी घास दिख रही है।

यहाँ एक फोर-व्हीलर दिख रही है फोर-व्हीलर की गेट खुले है गाड़ी वाइट कलर की है।

बच्चा स्लाइड टाइप की एक तार बनी हुई है उस पे खड़ा है।

ऊपर ब्लू कलर की खिड़की बंद है एक पेड़ की शाखा नीचे दिख रही है।

यहाँ स्टेज में कुछ लड़कियाँ बैठी हुई है कुछ लड़कियाँ खड़ी हुई है बीच में एक लड़का--

सामान रखा हुआ दिख रहा है अंदर बहुत सारे कांच के सोकेश में केक ही केक नजर आ रहे हैं सामने भी एक बाजू में दुकान है।

सामने ऑटो खड़ी हुई है यहाँ जहाँ लड़के बैठे है उसके पीछे एक गेट लगा हुआ है गेट बंद दिख रहा है।

यहाँ कुछ अअ रेत पड़ी हुई दिख रही है आस-पास थोड़ा पहाड़ी इलाका है।

यहां एक बहुत बड़ा हॉल दिख रहा है यह टीनशर्ट का बना हुआ है बहुत सारे पंखे भी लगे हुए हैं।

वहाँ एक आदमी कुछ सामान सर्वे कर रहा है एक अलमारी में कुछ सामान रखा हुआ दिख रहा है।

दीवार में कुछ महापुरुष की फोटो दिख रही है सामने एक चप्पल जूते रखने का स्टैंड दिख रहा है।

ये एक दुकान दिख रही है यहाँ फ्रीजर दिख रहा है फ्रीजर में कुछ पेप्सी माजा कोको-कोला की बॉटल दिख रही है यहाँ कुछ साइड में सामान रखा हुआ है।

इसमें कि नमक के पैकेट बिस्किट के पैकेट दिख रहे हैं यहां एक स्कैनर रखा हुआ है और बर्नी में बहुत सारी चॉकलेट दिख रही है।

यह एक बहोत बड़ा समुद्र दिख रहा है समुद्र में पानी -ही -पानी दिख रहा है।

आस-पास कुछ मकान बने हुए है टी-शर्ट भी डला हुआ है यहाँ पे --

यहां कुछ बारात जा रही है यहां कुछ लोगों के हाथ में ढोल दिख रहे हैं बड़े-बड़े बहुत सारे लोग दिख रहे हैं।

गोंगी भी दिख रही है आसपास मकान दिख रहे हैं।

कुछ लाइटिंग दिख रही है ब्लैक कलर का बादल दिख रहा है ढोल बहुत सारे है।

और अलग-अलग गेट बने हुए ऊपर जाने की सीढ़ियाँ बनी हुई दिख रही है।

यहाँ मोरंग की रोड बनी हुई है नीचे हरी-हरी घास बनी है आस-पास बहोत सारे पेड़ लगाए गए है।

यहां बहुत सारे एनिमल्स दिख रहे हैं कुछ कबूतर दिख रहे हैं तो कुछ मिट्टू है यहां पे।

यहां एक घर दिख रहा है घर में नीचे ब्लू कलर का कपड़ा बिछा हुआ है इस --

यह एक नदी दिख रही है नदी में आसपास बहुत सारे पेड़ दिख रहे है नदी के अंदर भी छोटे कुछ पेड़ नज़र आ रहे है यहाँ कुछ कचरा भी दिख रहा है।

यहां फोन पे का स्कैनर लगा हुआ है कांच के दरवाजे में।

यहां एक लड़की का चित्र बना हुआ है।

यहाँ एक कछुए के आकार की डिजाईन बनाई गयी है इसके नीचे--

और ऊपर ए_सी लगी हुई है यहां कमरे भी लगे हैं हैंगर में बहुत सारे टीशर्ट टंगी हुई दिख रही है कुछ कपड़े ऊपर अलमारी के खंड में रखे हुए दिख रहे हैं।

एक रोड दिख रही है रोड के छारों और बहुत सारी दुकान दिख रही है।

यहां ऊपर कुछ तोरण लगी हुई है ऑरेंज कलर की।

यहां कुछ बैलून भी लगाए गए हैं यहां बहुत सारे लोग दिख रहे हैं।

यहाँ पुलिस भी खड़ी हुई है साइड में पेड़ भी दिख रहा है।

यहां पार्क में हरी हरी छोटी घास दिख रही है कुछ पत्ते सूखे दिख रहे हैं।